इसके ऊपर एक अंकल जा रहे है उनके हाथ में कोई बैग है और यहाँ से आसमान नजर आ रहा है और बहुत सारे पौधे ल पेड़ पौधे दिख रहे हैं और पानी पड़ा हुआ है और मिट्टी भी पड़ी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे पौधे लग --

यहाँ पर पहाड़ नजर आ रहै हैं और पहाड़ से पानी व्हाइट कलर का गिरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से ग्रीन कलर की घास भी नज़र आ रही है और यहाँ पे ब्लैक कलर के पत्थर भी पड़े हुए हैं।

ग्रीन कलर का ऑरेंज कलर का और ब्लैक कलर का है और व्हाइट कलर भी नजर आ रहा है पानी बहुत सारा भरा हुआ है और आस-पास बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे---

बहुत सारे शटर नज़र आ रहें हैं एक शटर पे एंट्री गेट लिखा हुआ है और एक दूसरे शटर पे एक अंकल खड़े हुए हैं और --